संतोला है अनार है केला है और लोग बेच रहा है गाड़ी-उरी भी लगा हुआ है बहुत सारा लोग है बगल मे मकान का घर है ऊपर में छत भी दिया हुआ --